और एक इसके अंदर आदमी खड़ा है जिसने--

और इसमें सामने पार्किंग एरिया है जिसमें तीन कार खड़ी है।

काउंटर बने हुए हैं और उसमें--

अंदर दवाइयां भी रखी हुई हैं।

एक कुत्ता और दो बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

लकड़ी के पट्टे लगे हुए हैं।

उनके सामने एक बहोत सुंदर सीनरी भी लगी हुई है।